और ब्लू कलर का करकट है और गैराज के अंदर पूरा अंधेरा है।

सोफे पे वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे रैंक बनाकर इस पर कपड़े को रखा गया है।

एक छोटी बच्ची एक औरत को केक खिला रही हैं और उनके पीछे दो और औरत--

नीचे पूरा व्हाइट टाइल्स लगा हुआ है।

इस चित्र में दुकान के अंदर ठंडे के दिन के कपड़े रखे गए हैं।